वह स्टेशनरी के कॉपी किताब लोगों को बेच रहा है।

यह फोटो एक रेस्टोरेंट की है जिस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बनाई गई है।

कुछ मजदूर मसाले बना रहे हैं। कुछ मजदूर सीढ़ियों से लेजा के मसाले मिस्त्री को दे रहे हैं।

यह फोटो केनरा बैंक की है केनरा बैंक के अंदर ढेर सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं।

बाँस और बल्ली लगाई गई है और इस घर के सामने बहुत जगह दिखाई दे रही है जिसमे ईंटा रखा --

यह फ़ोटो नदी की है इसके किनारे किनारे मंदिर और घर बसा हुआ है यह फ़ोटो पुल से लिया गया है पानी बोहोत गहरा दिखाई दे रहा है।